पार्क में कुछ छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए हैं और छोटी-छोटी घास भी हो रही है।

इसमें बिच में एक सीमेंटेड उम्म छत दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ जगह बेठने की बनी हुई है पत्थर दिखाई दे रहें हैं।

बांस के खंभे दिखाई दे रहे हैं थोड़ी दूर एक वृक्ष दिखाई दे रहा है पानी की टंकी दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है रास्ता दिखाई दे रहा है बांस की से पौधों के राइट साइड में बॉउंड्री बनी हुई ह --